पेड़ के नीचे बहोत सारे लोग अ पूजा कर रहे हैं।

और वहां पर बहुत अच्छी काली है।

स्टाइलिश जिम दिखाई दे रहा है जहां पर सब लोग कसरत कर रहे हैं जिम में बहोत सारी--

मेरे सामने कोई कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है।

सामने एक मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है जिसके नीचे--

यहां पर सामने एक रोड दिखाई दे रहा है।

और रोड पर एक औरत चलती हुई दिखाई --

काफी बिजली के बोर्ड्स लगे हुए हैं और बिजली के सॉकेट्स लगे हुए हैं।

सामने एक रैक लगा हुआ है जिस पर बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है।